जो हरा कलर का है और दो पैकेट है जो रखी हुई है जो आसमानी रंग की है।

काले रंग का है उसपे कपड़ा बिछाया हुआ है जो सफेद रंग का है।

और लंबा लंबा पत्ता है एक टेबल है।

यहां मुझे एक होटल दिखाई दे रहा है जो आगे में बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है होटल --

यहाँ मुझे ए क बैनर दिखाई दे रहा है जिसमें मेनू लिखा हुआ है।

और छोटा सा पार्क है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं बैठने वाला है हाथी का झूला झूले कचरा का डब्बा है।

यहां मुझे एक लाइन का मशीन दिखाई दे रहा है जो डब्बा जैसा है जो खुला हुआ है।

पीछे दीवार है जो पुराना हो गया है छोटे-छोटे घास है।

जो जलेबी का रंग है हल्के पीले और नारंगी रंग का है एक के ऊपर एक चढ़ा के रखा हुआ है।

जो सर मे टोपी लगाया हुआ है चेक चेक शर्ट पहना हुआ है जो हल्के गुलाबी रंग का है।

और कुछ तस्वीर है जो सजाई गई है एक टेबल से कंप्यूटर रखा हुआ है नीचे--